इस चित्र ये पार्क दिख रहा है इस पार्क में जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो कुछ ग्रीन कलर के दिख रहे है और कुछ ब्लैक कलर के दिख रहे है।

इस हॉल में पर्दे भी लगे हुये हैं और कुछ बोर्ड भी लगे हुये हैं लाइट भी लगी हुई हैं पंखे भी लगे हुये हैं। इस हॉल में कुछ लोग हैं जो योगा कर रहे हैं।

इस चित्र में जो बिल्डिंग दिख रही है इस बिल्डिंग पर जो कलर पुता हुआ है वो ब्लू ग्रीन और नेवी ब्लू कलर का पुता हुआ है इस बिल्डिंग का जो गेट है वो ब्राउन कलर का है।

एक सर ने रेड कलर की शर्ट पहना हुआ है एक मैम ने ऑरेंज कलर का एंड व्हाइट कलर का शर्ट --